यहां पर एक बहोत बड़ा अ पेड़ दिखाई दे रहा है इसपे फूल लगे हैं।

यहां पर पंखा लगा हुआ है इसमें चेयर भी है एक लेडिस भी खड़ी हुई है यहां पे एक बंदा खड़ा हुआ है।

ऊपर भी साड़ी लटके हुए हैं यहां पर--

यहां पर बहुत सारे व्यक्ति बैठे हुए हैं यहां पर--

यहां पर हरे कलर का पूरे भी पत्ते भी लगे हुए हैं यहां पर डी_जे भी लगा हुआ है।

यहां पर कुछ चित्र बना हुआ है यहां पर--

बहुत सारे कूंची पड़े हुए हैं यहां पर लाइट लगा है पंखे भी है यहां पर--

यहां पे एक पुतला है खड़ा हुआ है यहां पर बहुत सारी सामान मिलते हैं।

सामान मिलते पुतले पुतले पे कुछ कपड़े पहेराए गए हैं यहां पे व्यक्ति बात भी करें रहे चेयर भी है यहां पर --

बादाम है जैसे पोस्टर पे कुछ लिखा हुआ है अंदर कुछ सामान है बहुत सारे सामान हैं एक यहां पे बंदा खड़ा हुआ है।

यहां प बहुत सारे ए_सी लगे हुए हैं।

पोस्टर पे कुछ हिंदी में लिखा हुआ है। स्कूटरी है सीडी है।

यहां प बहोत बड़ा पारक दिखाई दे रहे है यहां पर--

यहां पर एक चेयर दिखाई दे रहा है कुर्सी भी दिखाई दे रहा है यहां पर--

यहां पर पोस्टर पे कुछ लिखा हुआ है हिंदी में यहां पर--